यह एक रोड है और यहां गाड़ी का आना-जाना लगातार बना रेहता है और यह रोड बहुत ही अच्छा --

यह बहुत अच्छा जगह है और यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं और --

यह पौधे की केंद्र है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं।

सारे लोग घूमने टहलने के लिए भी --

बहुत ही समय तक रह के जाते हैं और --